काफी अच्छा लग रहा है साइड साइड में फूल वगैरा भी दिया हुआ है।

और काफी सुंदर बनाई हुई है।

ये मछली का बाजार लगा हुआ है जोकि एक व्यक्ति काट की दे रही है।

ओ सारे व्यक्ति लेने भी आए है।

और बादल भी अच्छे दिख रहे हैं मतलब घुला हुआ है बहुत ही सुहाना मौसम दिख रहा है।

यहां का नजारा बहुत काफी अच्छी दिख रहे हैं तमुन्दर है बहुत गहरा पानी हुए है।

में चार आलमारी नज़र आ रहा है जो कि उसमें शीशा वगैरह भी लगाया गया हुआ है।

पीटर जोगी हॉस्पिटल का नाम है।

एक पोस्टर भी लिखा हुआ है ।

और दो तीन व्यक्ति खड़े भी हैं और चेयर तो बहोत लगे हुए हैं।

नजारा अच्छा लग रहा है जो कि बेल का पेड़ नजर आ रहे है।

और साइड साइड में पेड़ पौधे भी लगे गए हुए हैं।

दो चार बोतल पानी भी है।

काफी अच्छे लग रहे दे--

और डी_जे के ऊपर में लाइट दिया हुआ जो कि सारा ऑन है और काफी अच्छे दिख रहे हैं।

सामान्य चार्ज लगे हुए।

एक मतलब बहुत सारा अच्छा डिजाइन बना हुआ है।

अरे दूल्हा जो की स्टेट पे है और सारे मनुष्य महिला गए हुए हैं।

और एक व्यक्ति रॉड को पकड़े हुए हैं और साईड साईड में घास वगैरा हैं।

साइड मा हाउस भी है।

और बड़ा बड़ा ड्रम भी नजर आ रहा है।

इसके पीछे भी बहोत सारे घर हैं।

और नीचे में दरी बिछाए हुए हैं ।

और आगे साइड एक हाउस में घर है।

ये एक स्टेडियम है।

लाइट ऑन है और काफी अच्छा लग रहा देखने में रात नाइट का टाइम है।

और पेर पौधा भी हैं।

काफी अच्छे लग रही एक रोशनी भी दिए गए--

भगवान का भी दिया गया हुआ है और एक में भी दिया हुआ है।